एक अच्छे आदमी दिखाई दे रहे हैं देखने से लग रहा है कि घर के यही मालिक है।

टेबुल पर एक प्लेट रखे हुए हैं उस प्लेट में कैफी सारे परौठे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है देखने से पता चल रहा है कि यहां पर--

फूल भी दिखाई दे रहा है देखने से पता चल रहा है कि यह नाइट का फोटो लिया गया है।

सजावट किया जा रहा है और काफी ही सुंदर यह दृश्य दिखाई दे रही है और काफी लोग अपने अपने कपार पर--

देखने से तो काफी ही सुंदर यह दृश्य दिखाई दे रही है और काफी ही सुंदर या मंदिर भी है।

और काफी ही सुंदर अभी घर दिखाई दे रही है और काफी सारा पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।

और पारक में काफी सारे छोटे छोटे बच्चों के खेलने वाला व्यवस्था किया जा रहा है।